दो आदमी हैं जिसमें एक ने नीले कपड़े पहन रखा है जिसके हाथ में गन है।

एक स्टील का तसला रखा हुआ जिसमें चारा रखा हुआ है पीछे दीवाल है।

एक लोहे का खंबा है जिसमें लाइट लगी हुई है बिजली की तारे निकली हुई है।

एक खिड़की है जो कांच की बनी हुई है जिसमें लोहे की सरिया लगी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारी दुकाने हैं दुकानों के बाहर टीन सेट लगा हुआ है पोस्टर लगे हुए हैं।

उपर झूमर लगा हुआ है छत पे ए_सी लगी हुई है रोड लाइटें लगी हुई है जो जल रही है।